कमरे में विभिन्न प्रकार के मशीनरी उपकरण बिखरे हुए हैं।

इस मशीन भी है और कुछ अन्य धातु के काम करने वाले उपकरण दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक खूबसूरत झरने का दृश्य दिखाई दे रही है झरना चट्टानों से नीचे गिर रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक रेस्टोरेंट या कैफे का क्षेत्र दिख रहा है।

ये तस्वीर खुले मैदान में एक क्रेन को एक कंटेनर उठाते हुए दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक झरना दिख रहा है जो की बोहोत सुंदर लग रहा है।

झरना चट्टानों के बीच से बह रहा है और नीचे शांत जलाशय बन रहा है।

वॉटर पार्क में विभिन्न प्रकार की है वाटर स्लाइड और खेलने की ही संरचनाएं दिखाई दे रही हैं।

वाटरपार्क के ऊपर छत दिखाई दे रही है जोकि धूप से बचाव करती है।

दुकान के सामने एक डिस्प्ले काउंटर है जिस पर कुछ स्नैक्स और मिठाइयां रखी हुई है।

रेमंड का लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जो एक प्रसिद्ध कपड़ा ब्रांड है।

लोग बड़े भक्ति भाव से बैठे हुए हैं और वातावरण शांत और आधुनिक लग रहा है।

है जिस पर करीमनगर डेयरी और स्थानीय भाषा में कुछ लिखा गया है।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क के किनारे कुछ खड़े हुए ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

सेल्फ पर हेयर केयर रखे हुए हैं।

ये तस्वीर एक सजी हुई मूर्ति या सजावटी वस्तु को दिखाई दे रही है।

की नामक एक ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है।

एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है सर्विस सेंटर में वाहनों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए खुले गैराज दिखाई दे रहा है।

इतने विज्ञापन संभव किसी धार्मिक स्थानीय के कार्यक्रम की जानकारी है।

दुकान का नाम सिटी सेंटर सालोंन है और यह गोपालगंज में स्थित है।

सैलून के अंदर एयर कंडीशनिंग की सुविधा उपलब्ध है जैसा की बोर्ड पर लिखा है।

रेस्टोरेंट में कई मेज और कुर्सियां सजी हुई हैं जो ग्राहकों के बैठने के लिए तैयार हैं।

इस तस्वीर में हमें एक मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

होटल के सामने सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं और एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

पास में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा भी दिखाई दे रही है।

है जहा की के किनारे में कुछ लोग का समूह खड़ा है।

इस तस्वीर में हमें एक गाड़ी दिखरी है जो की नीले रंग की टाटा नेक्सन कार दिखाई दे रही है।

जिनके चारों ओर लोग आकर्षित हैं मंच को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया हैं।

सफेद मालाओं में हरी पत्तियां और लाल रंग के फूल भी दिखाई दे रही हैं।

और मालाए बिक्री के लिए प्रदर्शित की गयी है पृष्ठभूमि में दुकान का काउंटर और कुछ अन्य वस्तुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान में सेल्फ पर अलग अलग रंगों के प्रकार के पेंट की छोटे डिब्बे भी रखे हुए--

यहां गो अलग अलग रंगों की है और ट्रैक के किनारे तरीके से पार्क की गई है।

ट्रैक का बना हुआ है उसके किनारे पर लाल और सफेद रंग के मार्कर लगाए गए हैं।

बगीचे विभिन्न प्रकार के फूल पौधे और झावपड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

ये तस्वीर एक सुपर मार्केट के अंदर बच्चों के कपड़े की सेक्शन को दिखाती है।

विभिन्न प्रकार टाइलें और फर्श के नमूने प्रदर्शित किए गए हैं।

कमरे की दीवारें सफेद रंग की है और वहां एक खिड़की भी है जिससे रोशनी आ रही है।

इस तस्वीर में हमें कुछ मछलियां दिखाई दे रही हैं जो एक सतह पर रखी हुई है।

मछलियां मध्यम आकार की है और उनकी त्वचा चांदी के रंग की है।

जिनमें से एक ईंट की दीवार है और कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर भारत के एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सहज जन सेवा केंद्र की--

एक बड़ा साइन बोर्ड भी लगा है साइन बोर्ड पर एक महिला और बच्चे की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

किले का पुरानी और ऐतिहासिक हैं जिनमें पत्थर की दीवारें आंगन और अन्य इमारतें शामिल--

सैलून में दो नाई की कुर्सियां और दर्पण लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें कपड़े की दुकान के बाहरी दृश्य का वर्णन किया गया है।

इसलिए ये आकर्षक लग रहा हैं दुकान के अन्दर कपड़े प्रदर्शित किए गए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक विशाल मेगा मार्ट के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है।